यहां पर बैलून से सजावट की गई है काफी सारी अलग अलग प्रकार की लाइटें जल रही हैं।

यह कुछ लकड़ी के बर्तन है जिन पे पेंट किया गया है।

यहां पर कुछ मोबाइल फोन्स भी रखे गए हैं कुछ स्पीकर्स भी हैं कुछ इयरफोन हैं कुछ चार्जर हैं और भी काफी सारे इलैक्ट्रोनिक सामान दिखाई दे रहे हैं।

सामने की और एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है जिसके पास एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ आदमियों ने बैग भी टांगा हुआ है।

बगल में एक घर दिखाई दे रहा है जिसपे नीला ग्रिल है सामने एक हरा टेंपो भी खड़ा है।